डब्बे पड़े हुए हैं।

तरफ देख रहे हैं बाहर एक--

है जिसके बाहर लोग कार्ड बनवा रहे--

आइस क्रीम वे बेकरी की दुकान देख रहे हैं।

पर आमलेट नॉन वेज वे--

दिखाया गया है मुझे विश्वास है।

अंकल वे आंटी एक टेबल पर खाना खा रहे हैं।

दिखाई दे रहे है जो की--

की डांस कर सकतें हैं।